--साथ ही मुझे बगल में एक ब्लैंकेट दिख रहा है।

के हाथ मे एक वाटर बोटल है जिससे वो पानी पी रहा हैं लड़के चट्टान के पास कुछ पौधे है।

छोटी कटोरी है प्लेट मे चम्मच रखे हुए हैऔर यहां इन्होंने अपना खाना आधा छोड़ के रखा हुआ है।

जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे है जा रहे है साथ मे तालाब के किनारे मुजेह एक बाइक दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर कि है तालाब के पास मुजेह एक नाव भी दिखाई दे रही है।

कुछ झाड़ियों पर पत्ती लगे हुए है यहां पर कुछ लड़के दिखाई दे रहे है जो पहाड़ी पर चढ़ रहे है।